छब्बीस जनवरी के तस्वीर छै जे मे एगो चर्च के आगे झंडा फहरा रहल छै। लोग सब झण्डा के सेल्यूट कर रहल छै।